जो किसी बिल्डिंग जैसी दिखा रहीं है वह सफेद कलर का दीवार भी है यहां और ये सब घास से भरा हुआ है और छोटा --

और ब्लू कलर का भी एक छोटा बिल्डिंग दिख रही है यहां और आकाश भी दिखा--

यहां तो यहां तो सफेद रंग का और ग्रीन कलर का दीवार है और गमले पे--

पौधा भी दिखा रही हैं और वहां एक स्कूटी भी है।

और यहां तो एक सफेद रंग का बोर्ड भी दिखा रही है और उसके ऊपर ब्लू कलर के लेटर से--

उम्म वेट लिफ्टिंग करने के लिए उम्म वो भी सामान दिखा रही है वहां वहां पीछे बिल्डिंग के पीछे एक--

ये तो एक मंदिर का एंट्रेंस एंट्रेंस है यहां तो कुछ भगवान का ऊपर--

अ स्टैचू जैसी दिखा रही है वहां ज्यादा लोग हैं यहां एक लड़की लाल रंग का शर्ट पहना हुआ है एक आदमी काला रंग का श--

और वहां ऊपर पैकेट्स भी दिखा रही है नाश्ते का ये लेज पैकेट्स से कुरकुरे पैकेट्स इस तरह की पैकेट्स दिखा रही है।

ज्यादा समान दिखा रही है और इसमें तो कुछ--

अं वहां तो दो लोग बैठा हुआ है।

लाल रंग के लेटर से लिखा हुआ है। यहां तो एक आदमी--

और यह एक आदमी बाहर जा रही वो तो पीला रंग का शर्ट पहेना हुआ है।

वहां तो दीवार हरा रंग का दीवा दीवार दिखा रही है और वहां तो कुछ--

यहां टी_वी के ऊपर ज्यादा सामान पड़ा हुआ है।

ये तो कार सर्विसिंग सेंटर हैं यहां तो का कार वॉश करने के लिए कार रखा हुआ है ये तो--

पानी का पाइप लाइन भी हैं और ओ ये तो ज्यादा पुराना दीवार जैसी लग रहा है ये सब कुछ पीछे--

यह तो एक नदी हैं और नदी के पास एक आदमी खड़ा हुआ है।